सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जो तीन चार मंजिल है और पानी की टंकी भी सामने दिखाई दे रही है।

कपड़ो की दुकान है| इसमें ऊपरी मंजिल पे पट्टी पे ऊपर माँ लक्ष्मी लाल अक्षरों में लिखा हुआ है माँ लक्ष्मी रेडीमेड़ लिखा हुआ है।

ओर बच्चे दिखाई दे रहे हैं इसके उस पार सिटी है और उसमें मकान बने हुए भी दे रहे हैं| सामने खुला आसमान दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधे वृक्ष दिखाई --

और स्टेज बनी हुई है और बाजू में बक्सा बक्सा रखे हुए हैं जो बजने वाले हैं और लाइट भी जल रही है और अति सुन्दर नजारा लग रहा है देखने में--

इसमें एक सामने विंडो दिखाई दे रही है सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है| जहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है और इसकी चोटी बनी हुई है चोटी पर दो माइक लगे हुए हैं ऊपरी भाग पर--